पीछे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं।

जहां पर पीछे साइड दो लड़के गाना बजा रहे हैं और एक आदमी माइक पे गाना गा रहा है।

यहां पे कई सारी कुर्सियां भी लगी हुई है।

यह दृश्य में कई सारे पेड़ पौधे लगी हुई है।

यह दृश्य में कई सारी कुर्सियां रखी गई है यहां पर ग्रीन कलर का मैट भी बढ़ा हुआ है।

यहां पर एक आसमान भी है यहां पर एक पाइप भी रखा हुआ है।

यहां पे कई सारे ड्रावर भी रखी गई है और यहां पे कई सारे पेन भी रखी गई है।

यहां पे कई सारे पाइप लगे हुए हैं।

यहां पे कई सारे लाइट भी लगी हुई है।

यहां पर कुत्तों का नहवाने का सामान रखा गया है।

ये कई सारे कार्टून भी फेंका हुए हैं यहां पे एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

और यहां पे कई सारे पेड़ पौधे भी लगी हुई है।

पीछे के साइड कई सारे छोटे मोटे पेड़ पौधे भी लगे हुई है।

और यहां पर कई सारे घास फूस भी है और यहां पे कई सारे छोटे मोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां पर स्टीलों के खपड़े भी लगे हुए हैं यहां पे स्टीलों के रेलिंग भी लगे हुई है यहां पर घर भी बने हुए हैं।

यहां कुछ बनाया गया भी है और यहां पर नीचे जमीनो पे टाइल्स भी बिछा हुआ है ऊपर साइड आसमान भी है।